फोटो रहे व्यक्ति ने मुँह पे फेसपैक लगाया हुआ है और एक व्यक्ति मोबाइल चला रहा है

और नौ को एक व्यक्ति चल रहा है और एक व्यक्ति बैठा हुआ है|

यह एक कैफ़े है कैफ़े में छह स्टूल रखी हुई है|

एक चट्टान है चट्टान के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है

यह एक छोटा-सा आर.के. कॉफी स्टॉल है जिसमें व्यक्ति चाय और बिस्किट बेच रहा है एक व्यक्ति चाय पी रहा है।

तथा अन्य व्यक्ति बैठे हुए हैं और खाली बोतल रखी हुई है|

बोहत बड़ी जममें है जंहा पे बोहत सारी चीप लगी हुई है ।

ये एक बोहत बड़ी जमीन है यंहा पे बोहत सारे व्यक्ति है ।

जो खड़े हुए है आसपास कार है मोटर साइकिल है ।